ये यहाँ से देखनें से कोंई पार्क लग रहा है एक आदमी फ़ोटो जोकी खिचते हुए नज़र आ रहा है दूसरी ओर बहुत ही सारे लोग नज़र आ रहे है शायद ये --

परपत बिहार वाला पार्क लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ लग रहा है यहाँ पे--

बॉक्स लगे हूए है बॉक्स बहोत ही अच्छे बॉक्स लगते है ये सारे बॉक्स --

चारो और छोटे-छोटे पहाड़ भी नज़र आ रहे है रेत भी नज़र आ रहे है कुछ बड़े-बड़े चट्टान भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन--

यहाँ पे एक बेड के ऊपर जो मरीज है वो लेटा हुआ है और कुछ दवाईयों का लगा हुआ है कुछ बेड बिस्तर जैसे लगाया गया है लगता है इसका पैर टूट गया है।